चित्र में मुझे अह उम्म शॉप के अंदर कई सारी लाइटिंग दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे पुरानी हवेली दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र मे मुझे कई सारे लोग दिख रहे है।

चित्र में मुझे रेस्टोरेंट के अंदर रिसेप्शन हॉल दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे कई सारी कि टेबल और कुर्सियां लगी हुई दिख रही है।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

ऐसे कई सारी चीज दिख रही है और कांच लगा दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक लड़की खड़ी दिख रही है और कुर्सी दिख रही--

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

चित्र में बीच से रोड दिख रही है और एक गेट दिख रहा है और कई बड़े बड़े पेड़ लगे हुए भी दिख रहे हैं।

चित्र मे मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं और चित्र में मुझे ट्रक दिख रहा है।